यह तो एक चर्च है यहां तो एक जीसस का स्टेचू दिखा रही है पीछे वो--

दिखा रही है दिखा रही है नया नया ईंट का है ये तो तैयारी का--

दीवा दीवार सब कुछ व्हाइट कलर और ग्रीन कलर मिक्स है और वहां तो बढ़िया नीम का पेड़ है।

यहां तो एक टेंपल दिख रही है ये तो ज्यादा बढ़ियां है टेंपल ।

आं पानी पे है और दूर से छोटा छोटा पेड़ और पौधा भी दिखा रही है।

गिफ्ट आर्टिकल्स हैं। इस रैक में ज्यादा दिखा--

और यहां तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ का मछलियां है यहां तो एक औरत पीला रंग का साड़ी पहना हुआ है और यहां तो थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ --

और वह बिल्डिंग का कलर लाल रंग का है और पीछे आकाश भी दिखा रही है।

कुछ डिफरेंट लग रहा है हाथ पे ना कुछ वाच पहना--

छोटा छोटा पौधा बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखा रही है वहां तो एक ब्लू कलर का एक--

और वहां कुछ ब्रिज जैसी दिखा रही है यहां पे एक लाल कलर का कार भी है।

अह दिखा रही है पीछे सिल्वर कलर का कुछ उम्म डिजाइन भी दिखा रही है।

अम दुर से ना कुछ अम अ मकान दिखा रही है ओर वहा एक--

ये तो एक शॉप है ये यहां तो एक आरती ट्रेडर्स नाम लिखा हुआ है वहां तो पीला रंग का ट्रेडर्स नाम के --

यहां तो कुछ लोग जा जाके देख टूरिस्ट है यहां एक आदमी खड़ा होके हाथ पकड़ के फोटो खींच रही है और वह एक--

बॉक्स दिखा रही है अ वो आदमी शर्ट फुल हैंड शर्ट पहना हुआ है वो तो व्हाइट शर्ट पर है और यह पानी है ना ज्यादा व्हाइट कलर का प्युअर दिखा रही है।